दीवार पर ए_सी भी लगाया हुआ है।

इस तस्वीर में मुझे एक छोटा सा घर दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे छोटे छोटे दुकानें दिख रहे हैं।

जिसमें बहोत सारा कपड़ा टंगाया हुआ है।

इंसान भी दिख रहे है।

बहुत सारे पेड़ भी दिख रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक कमरा दिख रहा है।

जो चारों तरफ से पत्थर से घेरा हुआ है।

इसके अंदर चेयर और टेबल है।

एक कपड भी दिख रहा है।

स्विच बॉक्स भी दिख रहा है।

जिसका रंग सफेद और लाल है।

इस तस्वीर में मुझे एक रेस्टोरेंट दिख रहा है।

दुकान के बाहर लाइट्स लगे हुए हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक कमरा दिख रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक बड़ा सा चर्च दिख रहा है।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

इसमें बहुत सारी कुर्सियां है।